ये एक फूल हैं कई प्रकार के फूल हैं गेंदे के भी है गुलाब के भी हैं। ये हमारी शादियों में भी काम आते हैं सजावट में ये जयमाला में भी काम आते हैं यहाँ बहोत खूबसूरत फूल हैं।

आ आ ये फल भी बहोत अच्छे हैं यहाँ के।

और यहां पे काफी सारे लड़के खेल रहे हैं कुछ लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं।

और यह बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और यहां सुबह-सुबह लड़के रेस मारने भी आते हैं और मुझे भी खेलने जाना है यहां पर क्रिकेट --

सब बैकग्राउंड पीछे का बहोत प्यारा है। देखने में बहोत अच्छा लग रहा है।

क्रीम कलर का घर है और ये रे गुलाबी कलर का मंदिर है।

ये कई सारे सोफे हैं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनका डिज़ाइन बहुत प्यारा है इसमे गददी लगी हुई है नीले कलर की जो --

और मैं जो अपनी छत पे आता हूं मुझे भी बहुत सारी बिल्डिंग दिखती हैं बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है लाल पीली हरी --

पुराने जमाने में भी ऐ.सी. रहते थे जो अब भी लग रही हैं यार यहां शीशे की विंड --

आसमान में पानी भी एक ही लग रहा है।

यहां तो बहुत अच्छी तरीके से पत्थर पत्थर सब रखे हुए हैं पीछे फुलवाड़ी है।

वो गंगा भी है और व तंबू भी रहते हैं और कुछ खाने वाने की सब सुविधा है।

बहुत अच्छी रहती है मैं ये चाय में बनाकर डाल डाल के पीता हूं बहुत अच्छी रहती है सेहत के लिए --

ये तो एक झंडा है इसमे केसरिया रंग भी है वाइट भी है और ये हरा भी है इसमे तो --

वो दौड़ते हैं ना किसी चीज में हम वो लेते हैं फॉर्म भरते हैं उसमें रेस चाहिए होती है। हम रेस मारते हैं तो ऐसे ही रेस मार रहे हैं ग्राउन्ड ग्राउन्ड बोहोत बड़ा है।

और इसके पास ये बादल देखो यार कितने बढ़िया लग रहे हैं और ये खम्मा देखो कहां बीच में खड़ा है पानी के --

और लाल हरे कई प्रकार के डिब्बे हैं यार मैंने ही बनाये थे एक बार ये कागज के।

बंडी दिखा है ये साइड में भी बंडी रखी है ये पीछे बोर्ड पता नहीं किस चीज का लगा हुआ है।